वो लड़का है वो लड़की खड़ा है कि लड़कियां जो है उजला कलर के टॉप काला --

जैसन कि हम देख पा रहिल हा रोड है रोडवा पर बहुत सारा गाडी लगहि कै बहुत सारा आदमी ह कै वो रिक्षा ह कै रिक--

जैसन के हम देख पा रह लिए है ई ये वो कम्‍प्‍यूटर सेंटर है यहां पर बहुत सारा कम्‍प्‍यूटर है बहुत सारा लेप--

और एक ऊ लड़का बैठल है जो ऊजला कलर का शोर्ट और काला कलर की पेंट पह--

जैसन के हम देख पा रह लिए है दोगो मंदिर है मंदिरवा के आगे पेंट करके लिख लिगा है लोचन शिव मंदिर यहां पर ई--

परी दूवों गेट भी दिख रले है जो लोहा का है कुछ ऐटा दिख रहेले पीछे वो घर दिख रहेले पीला कलर हे के है यहा परी----

काई एगो कुर्सी लगा लकाई सामने मैं कुछ पोस्टर टंगा लकई दिन का टाइम भीदे दिख रहा लेहा।

का स्‍टील के रैलिंग बन लाहा है काय बगल वा एक वो मंदिर है काय जो गुलाबी कलर से पेंट करिला है काय मंदिरवा के ऊपर में ला--

दिख रहा पेड़ भी दिख रहा दूर में टावर दिख रहा बहुत सारा ऊंचा ऊंचा पेड़ दिखाई दे रहे गारा के आगे---

जैसन कि हम देख पा रहे लिए है यह वो पेट्रोल पंप है जता परी दो टैंक लोरी अलग अलग --

जैसन कि हम देख पा रहल हिए यहां ई एगो वो धर्मशाला है जहां पर दूगो कालीन बिछल ---

सामने में वो स्विचबोर्ड लगा ला है कई दूप वो लड़का आ है का एक वो लड़का अब आये जो ब्‍लू कलर के टी_शर्ट काला कलर का जीन्‍स --

जैसन के हम देख पा रह लिए है ये ऊं झालमुरी की दुकान है काय जा कारा में भुंज्‍जा रखा लागा कुछ पकोड़ी रखा--

एके बर्तन बनल दिखाई दे रह लिया है सामने में एक ऊ बैंचवा पर एक वो आदमी बैठला का जे ये ऊजलवा कलर के--

किम वो घर दिखाई दे रह लिया है जो हरि हर कलर से पेंट करिहा का ऊजला कलर से दिन के टाइम होवे के कारन से सब कुछ साफ और अच्‍छा दिखाई दे रह लिया है --

तीन अलग अलग मूर्तिया ऊपर छतरी अलग अलग है मंदिरवा के आगे बहुत आदमी खड़ा है के ए वो लाइट दिख रहे ले है।

बहुत सारा कंप्यूटर रखा लका हे येजा पडि कुछ आदमी बैठा लका है ख्रुसी लका लगा है जे लाल कलर के है वो सोफा लगा लका है और सामने मै कुछ पो--

शर्ट पहन ले ब्लू कलर के टि_शर्ट पहन ले काला कलर के टि_शर्ट पहन --

चढ़ा के जे लाल कलर के एक लूंगी है और उजाला कलर के सर्ट पेहेनले --